और पर्दा लगा हुआ है जो गुलाबी कलर का एक आदमी है एक पैर उठा कर रखा है उसमे आदमी के पैर में उसमे कुछ वेंडेज बंधा हुआ है।

और निचे में कुछ धुप की रौशनी आ रही है।

येलो कलर का कुछ रखा गया है फूल और ऑरेंज कलर का भी रखा गया है फूल एक औरत है जो--

ता खीरा लौकी सजना फिर कुछ प्लास्टिक में भी सब्जियां रखी गई हैं कुछ कटोरी रखे गए है जो स्टील की है जो दिखाई दे रही है।

ये जो थाल के काले - काले भूरे - भूरे से दिख रहे है साइड में छोटा -छोटा घर है जो मंदिर दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे पार्किंग रोड दिख रहा है जिसमें बहुत सारी कारें रखी गई है कुछ स्कुटियाँ भी रखी गई है।

पीले कलर के पर्दे लगे हुए है फिर सीढियाँ है जो पर्पल कलर के दो चप्पलें है जो नीचे में रखी हुई है जो रेड कलर की हैं।

इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रही है जो ब्रॉउन कलर का बोरा है जो इसमें रखा हुआ है वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

ऊपर घर है जो रेड कलर का दिख रहा है ऊपर वहाँ पे एक बैनर लगी हुई जो दिखाई दे रही है एक पेड़ है जिसका तना दिख रहा है।

ये टंगे हुए है और कुछ कारे दिख रही है जो रेड सिल्वर और वाइट में है।

पैंजन बने हुए है जो हल्के ब्रॉउन कलर का दिख रहा है और जो नीचे में फर्श है वो गुलाबी है।

पिले और हरे रंग में दिखाई दे रहै है पतली पतली टहनिया वाले है और नदी के उस पर बहोत--

और एक आदमी है जिसका सर नहीं दिख रहा है सिर्फ शरीर दिख रहा है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हैं।

कुछ प पत्थर दिख रहे है जो पहाड़ में बने हुए भूरे-भूरे दिख रहे है एक छोटा सा पत्थर जिसमे एक आदमी बैठा है जो लाल के टीशर्ट पहना हुआ है।

ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और एक पेड़ हैं जिसमे टहनी बहुत ऊंचा हैं और हल्का--

लिखा हुआ है और बड़ा सा गेट है और बड़ा-बड़ा खिड़की दिखाई दे रहा है और झंडा गाड़ने वाला बाहर में बना हुआ है।

रखा गया है और ऊपर में कुछ पंखे है जो सीधा है और कुछ पंखे--